ने ब्लू टी-शर्ट पहना हुआ है।

उसने फ़्रोक पहना हुआ है और नीचे धोती।

कुर्सी का रंग नीला है। आदमी के ऊपर एक टॉवल दिखाई दे रही है।

और एक आदमी खड़ा हुआ है उसने चश्मा --

एक आदमी हेलमेट लगाके खड़ा है और एक दादाजी --

एक लड़का पीले रंग का टी-शर्ट पहना हुआ खड़ा है।

दो लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।